वो आदमी उस तरफ बिल्डिंग के अंदर जा रहे हैं और एक आद दो आदमी उस बिल्डिंग के बाहर खड़े हुए हैं।

और कई लोग दूल्हा और दुल्हन के पास खड़े हुए हैं।

बिल्डिंग है। यह बिल्डिंग सफेद रंग की है और पीले रंग की है और जो गेट है वह पीले और लाल रंग का है। आसमान नीला है और दो पेड़ है।

जो पत्तियों का जो ऊपर का पत्ता है वो पानी के ऊपर है और तालाब के तहला एक रास्ता भी जा रहा है।

नदी के ऊपर बनाया गया है और ऊपर आसमान में कई सारे सफ़ेद बादल है एक आदमी साइकिल लेकर जा रहा है उस ब्रिज पे से और वह लाल रंग का टीशर्ट पहना हुआ है।

पीछे शिव की फोटो लगाई गई है और जो स्टेज है वो हरे रंग का और यहाँ पाँच लड़कियां भरतनाट्यम --

का नाच नाच रही है| बहुत रंगीन साड़ियाँ पहनी हुई है लाल नीले और हरे रंग की और मेकअप कर --